इसमें दो लेडिज क्रिकेट खेलते हुए दिख रही है एक पीछे कीपिंग कर रही है और एक बैटिंग कर रही है आजू-बाजू नेट बनी हुई है स्टांप लगा हुआ है लगी है उसके ऊपर।

दोनों हेलमेट पेहने हुई है और आजु-बाजु क्या कहते है घास टाइप का दिख रहा है घर दिख रहा है ग्रीन कलर की नेट दिख रही है और पेड़-पौधे दिख रहे है आजु-बाजु।